इनके साथ का लड़का है एक जो साथ में उसकी सर्फ वगैरह लगा रहा है।

यहाँ पर कलर सी लाइटें भी इतनी बढिया तरीके से करके मतलब काफी ब्रांड स्टाइल की यहाँ पर मिलती हैं।

काश हम भी इस वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते।

घर डेली यूज की हर एक यहाँ पर आइटम मिल सकता है तो गाइस यहां पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये लगी हुई हैं।

ऐसी जगह से सामान खरीदना चाहिए जिससे हर एक सामान हमें मिल जाए।

देखिये गाइस मुझे लगता है ये कोई वेडिंग वगेरा का पंडाल है।

यहाँ पर ट्रेनें आती हैं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह एकदम एकदम पहुंचाती हैं हमें जिससे हमारा टाइम बचता है वो --

जिससे अपनी गेम्स की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं और किस किस हिसाब से बना हुआ है साथ में इतना बढ़िया लग रहा है ये स्टेडियम यहाँ पर जाने का तो हमारा भी मन कर रहा है।

ओ गाइस देखिये ये कोई पंडाल वगेरा कोई बैंक्वेट होटल की अन्दर का नजारा है यहाँ पे ए.सी. वगेरा भी लगी हुई है।

देखिए तो ये कोई कपड़ों की शॉप है गरम गरम गर्म यहाँ पर जर्सी वगैरह अटक रही है।

देखिए गाइस ये कोई कपड़ों का मॉल है और यहाँ पर देखिए लाइटिंग कितनी बढ़िया तरीके से की गई फोकस वाली।

इसे करने में तो बहोत ज्यादा मजा आयेगा। साथ में सेल्फी लेने में बहुत ज्यादा --

देखिए गाइस कितना बढ़िया नजारा लग रहा है ये तो वही वाली नाव है जिसे मतलब ये अभी लेक पे से चला के आ रहा है और ये इवनिंग का टाइम हो रहा है।

देखिए गाइस ये कोई बहुत पुरानी कॉफी शॉप है।

देखिए यहाँ पर ये एयरटेल फोर जी वोडाफ़ोन ये बुक वर्ल्ड मतलब यहाँ पर बुक ही बुक मिलेंगी यहाँ --

ये दीवार के ऊपर जो डिजाइन है काफी पुराना है। ये दीवार भी बोहोत पुरानी टाइम की लग रही है मतलब अंदर कोई बोहोत बढ़िया मंदिर है।